ए भी गमले टाइप के फूल बने रखे है अ फूलों के नीचे लाल कलर का एक टाइल्स दिखाई सा दे रहा है बूंदे बनी हुई है।